एक सुंदर सा प्लेट है जिसमें चिकन का लेग पीस का पकौड़ा टाइप का दिख रहा है और कुछ सलाद है।

यह कोई रजिस्ट्री ऑफिस है कटिहार का और यहां पे एक बिल्डिंग है जो कि ग्रीन कलर का है।

ब्राउन कलर का कलर है और दूसरा ब्राउन कलर का है।

गेंदे फूल से सब डोर के आगे कुछ डेकोरेशन किया गया है तीन चौकी है।

यह इमेज में एक लड़का है जो कि जिम कर रहा है जो की एक ब्लैक --